बच्चे आते हैं और छोटे -छोटे एक्सपेरिमेंट करते रहते है।

सुबह शाम बच्चे खेलने आ सकते हैं।

और इस में से एक में जा रही है।

बहोत ही सुंदर हैं और ये बहोत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है।

यह फोटो एक आंगनबाड़ी का फोटो है जहाँ पर टीचर लोग बच्चों से --

और शिव मंदिर में अनेक भगत पूजा करने दर्शन करने के लिए आते हैं।

और अपनी मनोकामनाओ को पुरन करते हैं।

इस रूम में एक आदमी बैठा हुआ है जो मसाज करवाने के लिए बैठा हुआ है। उसके मू पे क्रीम लगाया गया है और एक आदमी फोटो खीच रहे हैं।

बोहत सारे लोग यहाँ पर इस भाषण को सुन रहे हैं। यहाँ पे आंटियां --

लिखा गया है हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एवं डिश रिचार्ज किये जाते हैं।

इस ए.टी.एम. में लोग पैसे निकलते हैं।

इस बेंक के बाहर यानी की बगल में एक ऐ.टी.एम. भी है जहां से लोग अपने पैसे निकाल सकते हैं।